यह एक पार्क है इसमें काफी सारी हरी भारी पेड़ पोधे है इसमें दो बच्चे है एक ने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी है और ग्रे कलर का चड्डा पहना है।

जोकि कार के बोनट पे कुछ उसमें रिपेयरिंग का काम कर रहा है उसके पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है।

यहा पर ऊपर आसमान है आसमान मल्टी कलर का है कई जगह आसमान ब्लू कलर का हल्का ब्लू और वाइट कलर का है यहां काफी सारे पेड़-पौधे भी है।

और पीछे ऊपर आसमान है आसमान मलटी कलर है जैसे की ब्लू कलर बैंगनी कलर का हरे कलर का --

एक ब्लेक कलर का ऑडियो साउंड लगा है एक गोल्डन कलर का ऑडियो साउंड लगा है यहाँ पर कुछ अ ब्लू कलर की लाइने भी लगी हुईं है और ऊपर स्पीकर भोंपू लग है बहोत सारे पीछे पेड़ पौधे है।

यह एक टू -विलर का शोरूम है यहा पे बहुत सारी स्कूटीया रखी हुई है और सभी स्कूटीया अलग-अलग कलर की है जैसे की ग्रे रेड ।

यहाँ पे कुछ स्कूटी भी खड़ी हुई है और उनकी सीटें भी यहाँ पे ब्लैक है होर्डिंग्स भी लगी हुई है यहाँ पे एक बॉउंड्री भी है और पेड़ पौधे भी।

यहाँ पर एक भवन बना हुवा है एक कार्यालय है जो की मल्टी कलर से पुता हुवा है जैसे की ओरेंज कलर से ग्रे कलर से और ब्लू कलर के वहां पे सीसे लगे हुवे है।

और उसकी गले में मालाऐ ट-टंगी हुई हैं स्टेचू पे चड़ने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है जो की ब्लेक कलर की हैं और ऊपर यहाँ पे काफी सारी लाइट्स लगी हुई हैं निचे जमीन पे फ़र्स हैं।

और यहाँ पे बोहत सारी हरी- भरी वनस्पतियां उग रही है जमीन पे और यहाँ पे काफी सारी झाड़ियां और पेड़ पौधे भी ऩजर आ रहे है।

यहाँ पे जो दीवाल ऐ है वो सफ़ेद और ओरेंज कलर की है एक सेन भी यहा पे लगा हुवा है जो की सफ़ेद कलर --

यहाॅं पर एक दुकान है जिसमें बहुत सारा खाने-पीने का सामान रखा हुआ है यहाॅं पर बहुत सारे लोग बैठे हुए है ओर सभी लोगों ने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने है एक ने ब्लैक कलर की हुड पहनी है।

और यहा पे बहुत सारे इलेट्रीसिटी के वायर हे ऊपर बहुत सारा बादल है जो की वाईट कलार की--